रीसेप्शन की तस्वीर है जहाँ प्रवेश द्वार है जो की बहुत ही सुंदर तरीके से--

सजाया गया है जहाँ हम भी अपने परिवार के साथ जाते है।

रामजी और बजरंगबली जी का मूर्ति यहाँ पर इस स्थापित किया गया है।

यह एक पहाड़ी छेत्र कि तस्वीर है जहा आस पास कई सारे हम को पहाड़ नजर आ रहे है ।

ओर हमरे लिए भी ओर हमारे घूमने के लिए भी बहुत ही अछा पर्यटन स्थल हम को नजर आ रहा है ।

जो कि वातावरण का ये बहोत ही सुंदर ओर बहोत ही लाभदायक होता है।

ये बहुत ही फायदेमंद है और हम लोग मस्ती भी थोड़ा बहुत कर सकते है।

काजू किशमिश और बादाम पिस्ता उसको --

हमे आसानी होती है दो पहिये चार पहिये वाहन ले जा सकते है जोकि बहोत फायदेमंद ओर बहोत ही सुविधाजनक है।

समस्या का यहाँ समाधान किया जाता है।

लोग की एक गीजर से चलने बाली बोट मे सवार हुए--

जिसमें एक चलने के लिए एक छोटा सा रास्ता है और किनारे मे कई सारे लाइन से शो के पेड़ लगाए गए है।